नाम का एक बहोत बड़ा पोस्टर दिखाई दे रहा हैं।

जिसके आस पास बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए दिख रहे हैं।

पानी भी भरा हुआ दिख रहा है।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

बहोत सारे पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस चित्र में स्टूडेंट हायर सेकेंडरी स्कूल --

जिसकी बिल्डिंग क्रीम कलर की है।

बहोत बड़ी जिम दिखाई दे रही है।

और काफी सारे लोग जिम करते हुए दिख रहे--

जिसके बाहर एक सफेद कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

बहुत सुंदर खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

जिसके बाहर टेंट भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये इस चित्र में हनी क्लास हाउस --

सारा पानी बहता हुआ दिख रहा है और जिसके आसपास बहोत सारे पेड़ भी--

एक डेकोर नान की दुकान दिखाई--